जिसके ऊपर वर्मा ऑप्टिकल्स कंप्यूटराइज्ड आइस टेस्टिंग एंड कॉन्टैक्ट लेंस क्लिनिक लिखा हुआ है।

इस रूम में एक फैमिली बैठी हुई दिख रही है।

यहं कोई अपार्टमेंट भी हो सकता हैं।

शॉप बनी हुई है जिसके ऊपर दो सिटी --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

सारे गुलदस्ते भी पड़ी हुई हैं जिसमें अलग-अलग तरह की कई फूल दिख रहे हैं।

उन्होंने नीचे अलग अलग रंगों के मैट भी बिछाई हुई है।

यह दृश्य हमें किसी फंक्शन का दिखाई दे रहा है।

समुन्दर के पास मे बाहोत ही सारी पहाड़ भी दिखाई दे रही हैं।

इस पर एक स्टेज लगी हुई है जोकि पूरी सजावट सजी हुई है।

गमलों में भी फूल उगे हुएं हमें दिख रहें हैं।

यह दृश्य हमें किसी कैफे का दिखाई दे रहा है।

इस कैफे में हमें कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे।

और ये पूरा लाइटों से सजा हुआ है लाल और नील रंग की।

इसमें हमें दो डेंटिस्ट दिखाई दे रहे हैं।

पार्क के आसपास कुछ हरी भरी वृक्ष भी दिखाई दे रही--

क्योंकि अलग-अलग बगवानों की दिखाई जा रही है।

इसमें हमे बहोत सारे कमरे जिन्हो सभी में ए_सी लगा हुआ हमे दिखाई दे रहा है।

अपना काम करती हुईं दिखाई दे रहें हैं।